पीछे बहुत ही जायद सुन्दर से डेकरैट की गई है ये जगह बहुत ही जायद खूबसूरत है लेकिन ये थोरी सी सुनसन और सन्नाटे भरी है क्यू की यहाँ पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी भी नजर आ रही है लेकिन यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आर रहा है।

साइड मे थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन टाइप के फूलस लगाए गए है वहाँ पे अभी पत्ते ही है नीचे का हिस्सा बहुत ही जायदा साफ सुथरी लग रही यही अच्छी भी लग रही यही .।

और वहा पर भी कुछ भाई लोग खड़े हुए हैं और यह बहुत ही ज्यादा अच्छा नजारा है पीछे घर भी नजर आ रहा है।

नजर आ रहे है। जो की ब्लैक कलर की है। उसके सीटे भी ब्लैक कलर के है। सामने में बहुत ज्यादा मशीन के जैसे बने हुए है। ये घर के समाने रखा है। और निचे का फर्श है वो भी ब्लैक कलर की नजर आ रही है। पीछे एक आदमी नजर आ रहा है। जो शॉर्ट्स पेहना हुआ नजर आ रहा है।

ते नजर आ रहे है। दोनों के सर पर टोकरी है। एक ने अपने टोकरी को रेड कलर के कपड़े से बांधा है। एक ने थोड़ी सी खुली छोड़ी हुई है। दोनों ने साड़िया पेहनी हुई है। दोनों सामने की तरफ चल के आ रहे है।